और चार पांच सीढ़ियां भी है इसके आगे एक गार्ड बंदूक ले खड़ा है और इसके ऊपर चार ए_सी भी लगी हुई है।

यह एक तालाब है जिसके अंदर दो वोट दिखाई दे रही हैं आस पास हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह एक शॉप है जिसके बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने कोर्ट और जींस ब्लैक जूते पहेन रखे हैं दुकान के बाहर द सिटी लिखा हुआ है।

आसपास तीन से चार पटरिया दिखाई दे रही हैं स्टेशन के आर्द पार पेड़ पौधे बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है स्टेशन पे --

पटडीयां दिखाई दे रही हैं आसपास दीवार दिखाई दे रही है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे--

अं लोग इधर उधर जाते हुए इसमें दिखाई दे रहे

यह एक बिल्डिंग के पास का कुछ नजारा दिखाई दे रहा है इसमें कुछ गाड़ियां जाती भी दिखाई दे रही है कुछ लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं।

इस दु दुकान के सामने कुछ ओर दुकानें भी लगी हुई दिखाई दे रही है आसपास बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है।

जिसका आधा कलर व्हाइट और आधा ब्राउन दिखाई दे रहा है इसके नीचे--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

चारों तरफ से दीवार पे लाइटे लगी हुई है इसके अंदर कुछ कुर्सियां टेबल्स रखी हुई है।

यह एक शॉप है जिसके अंदर अलग अलग खाने बने हुए हैं जिनके अंदर सामान रखा हुआ है कुछ अगरबत्तियां रखी हुई हैं कुछ --

यह एक गांव की रोड दिखाई दे रही है ऊपर बादल छाए हुए हैं आस पास कुछ बिल्डिंगे दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रहा है एक बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है जिसके आसपास कोई गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रहीं हैं जिसके बाहर एक --

खड़े हुए दिखाई आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ औरतें आती जाती दिखाई दे रही है।

यह एक गुलाबी कलर की पिंक कलर में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जीसके आस पास नारियल के पेड़ और अनेक पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जिसके --

यह क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य का एक ऑफिस है जिसका बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें एक पार्क बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें--